जो लोग हैं खाना खा रहे हैं और कई लोग फ़ोटो भी खींच रहे हैं सामने कैफ़े में--

मेरे सामने एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो कि बहोत ही बड़ा पेट्रोल पंप लग रहा है और उसी के साथ--

यह एक गाड़ियों का सर्विस स्टेशन है जहां पर गाड़ियों की सर्विस हो रही है।

और साथ में रैंप वॉक भी बनाया गया जहां पर लोग घूम रहे है सैर कर रहे है।

यह एक बिना साड़ी सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है जहा पे नीचे साईडीया लगायी गयी है और बहोत सारी यहा पर--

है कुछ लोग खेल भी रहे हैं और साथ में ही कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं ब्यूटीफुल बूटे भी यहां पर गमले वगैरा रखे हुए हैं जोकि बहोत ही अच्छे --

यहां एक बहुत ही बड़ा घर है जो की बहुत ही बड़ी बिल्डिंग व्हाइट कलर का घर है जिसके बाहर व्हाइट कलर की --

और सामने ही बैंक का गेट दिखाई दे रहा है।

ब्रिज के नीचे एक पानी की जो नदी--

यहां सामने बहोत ही अच्छे तरीके से--

बच्चा भी खेल रहा है और उसके साथ--

यह एक लड़की की तस्वीर है जहां पर लड़की--

ने अ पीले रंग की फ्रॉक पेहनी हुई है और पीछे--

बनाई गई है और उसके पीछे ही एक उसके अंदर भी लगा हुआ है।

जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसके साथ में ही लाल रंग का--

अं गेट के पिलरों पर कुछ मूर्तियां भी लगी हुई हैं जो की मंदिर की मूर्तियां हैं।

हा यहां पर बुरी लाइटों का ऊपर लाइट बढ़ रही है और सामने ही कुछ लोग और भी बैठे हैं।